यहाँ बहोत सारे बोड़े भी रखे गए हैं। यहाँ बहोत सारे लोग दुकानों में बैठे हुए हैं। यहाँ लोहे के बड़े बड़े रॉड लगे हुए हैं। यहाँ दुकानों के ऊपर चट बांधी गई है।

यहां हरे रंग की दीवार भी है। उसमे एक खिड़की बनी हुई है यहां पर पेड़ भी लगे हुए है।

यह एक मैदान है मैदान में बहोत सारे हिरन हैं कुछ हिरन खड़े हैं कुछ इधर-उधर घूम रहे हैं।